यह पार्क में बहोत आदमी सुबह शाम घूमने टहलने के लिए आतें हैं।

यह नदी में बहुत मछुवारे लोग मछली पकड़ के अपना गुजरा करते हैं ।

यह एक संजता टेंपल है।

और यह बस से बहुत आदमी यात्रा करते है और यह बहुत बड़ा-बड़ा बस है ।

और यहाँ बहुत से गाड़ी आते हैं जैसे मोटर साइकिल टैम्पू और भी गाड़ी यहाँ अच्छा कराने के लिए लाते है और यहाँ बहुत अच्छे से ठीक भी करते --

और यह जंगलों में पाया जाता है।